खड़े हुए फोटो खिचवा रहे है। अंकल ने कोट - पेंट पहना हुआ है।

यहाँ पर बहुत सारे जिम के एप्लायंसेज हैं।

और बीच में रेड कलर का कारपेट है।

जो टंगे हुए हैं यहाँ पर बहुत सारी वैरायटी के कपडे टंगे हुए हैं।

ये एक सड़क का फोटो है। जहां पर बहुत सारी गाड़ियां खड़ी दिखाई दे रही है।